ने धोती कुर्ता पहेना हुआ है कुछ ने पगड़ी पहेनी हुई है इन पगड़ी का रंग नीला और ब्लू कलर का है पीछे --

मैदान दिखाई दे रहा है जहाँ पर विभिन्न कलर की घास उगी हुई है मैदान के किनारे पर और कुछ बीच में बड़े - बड़े से ग्रीन कलर के सीधे लम्बे --

इस इमेज में मुझे एक नदी दिखाई दे रही है नदी पर मुझे दो नाव दिखाई दे रही हैं।